जिसमें लोग आज आ रहे हैं।

दीवार पर बैनर भी लगा हुआ हैं।

पीछे एक टोल टैंक भी रखी--

छत पर बहोत ही सुंदर रंगी बिरंगी बड़ी-बड़ी लाइटें जल रही हैं।

पीछे घर बड़े बड़े बने हुए है।

मुझे बहोत सारी मिट्टी और घास भी है।

और नीचे टाइल्स भी लगी हुई है।

और एक मोटरसाइकिल भी खड़ा हुआ है।

और हरे गुलाबी नीले पीले रंग के फूल हैं।

पुल के अंदर एक बड़ा सारा झरना फूआर भी लगा हुआ है।

घूम रहे हैं और खेल रहे हैं डस्टबिन भी है।

यह एक खेत की फोटो है खेत में बहुत सारा पानी लगा हुआ है।

और एक मोटर भी लगी हुई है।

काले रंग के कपड़े पहने हैं और बाकियों ने सफेद रंग के दीवारों का रंग सफेद है और उसके ऊपर--

जहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुएं हैं।

अंदर एक मेज और कुर्सी भी रखे हुए हैं।

काफी पानी और मिट्टी भी है और कई तरह की--